फोतो में लंबा सा सीढ़ी दिखाई दे रही है।

तिरपाल के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है।

साइड में दो बड़ा बड़ा लाउडस्पीकर डिखाई डे रहा है।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

गाड़ी पार्किंग करते हुए दिखाई भी दे रहा है।

रस्ते के किना में स्ट्रीट लाइट भी है।

ऊपर सीलिंग में फैन लगाकर है।

रस्सी में बहुत सारा फ्लैग लगाकर है।

ये फोटो में एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत ज्यादा समान दिखाई दे रहा है।

सामने ब्लैक कलर का स्प्रे दिखाई दे रहा है।

यह आदमी का चेला चेरा को ब्लर करके रखा हुआ है।

ये दीवार को येलो कलर से पेंट करके है।

यहां ब्लैक कलर का हेलमेट भी रखा हुआ है।

बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पेन किया गया है।

इसके चेहरा को ब्लर करके रखा हुआ है।

नीचे का फ्लोर लड़की से बना हुआ है।

काउंटर के ऊपर एक मोटर रखा हुआ है।

फोतो में लंबा सा ब्रिज दिखाई दे रहे है।

ये फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा पेड़ पौधा निकल गई है।

ये लड़का का चेहरा ब्लर करके रखा है।

फोटो में एक गार्डेन दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारा पेड़ पौधा निकला हुआ है।

फोटो में एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहे हैं।

रस्ते के किनार पेड़ पौधा निकाल के है।

गेट का सामने वह बनाकर है।

लॉन में आदमी लोग फुटबॉल खेल रहा है।